मार्केट में ओ पीला कलर से पेंटिंग किया गया और ब्लैक कलर से लिखा गया और छ अ रंग बिरंग का छाता लगा हुआ रेड ब्लू पीला हरा एगो छाता लगा हुआ और मेला में बहुत सा सारे आदमी घुमने आए हुए हैं और तरह-तरह के दुकान लगा हुआ है।

यह मॉल है। इसमें सर्फ एवं साबुन एवं टॉयलेट साफ़ करने वाला बाथरूम साफ़ करने वाला कई प्रकार एवं कई कंपनियों के हैं।

बहुत बच्चे हैं और यह स्कुल में अम ड्राइंग चल रहा है और सब बच्चे अपना-अपना ड्राइंग बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब बच्चे अपना-अपना ड्राइंग बना रहे हैं और सब बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं।